कॉपी करने वाला मशीन है।

और दो चार कुर्सी हैं पांच कुर्सी है टेबुलोओ है।

और एक गांछ बगल से दिख रहे हैं।

व्हाइट कलर का दीवाल है।

बोतल में पानी है निरमा है।

जूस हैं पेप्सीए हैं आम के जूस है संतरा के जूस हैं।

घायला गुगरू दिख रहा है।

वो सारा आदमीन हैं मेला लागल है।

शोरूम है शोरूम में बहुत बोलोरो दिख रहे हैं।

उधम पौधे हैं नारियल के गाछ बगल से दिख रहा है।

बड़ा से एक ठो आउर बगल से दुकान है।

पत्थर दिख रहा है काला काला।

और उधर नारियल की गाछ दिख रहा--

लंबा सा रोड है।

कुर्सी पर रखल है।

एक हरा खाना खिलौना है।

घर के अगल बगल कुछ लिखा गया है।